दूसरा सामान रखा है ये शॉप अंदर से पूरी व्हाइट कलर की है ऊपर छत में व्हाइट लाइट लगी--

और चैनल गेट है यह और सामने ऊपर व्हाइट कलर का पोस्टर लगा है दक्ष ऑइल एंड टायर्स का।

रेड और ब्लू कलर के पोस्टर टांगे हैं इस पर टाटा स्काई के पोस्टर भी है सामने--